नहीं कोई हमे बीमारी होती कुछ भी नहीं और हमारा जो शरीर है वो अच्छा-खाशा रहता है।

ट्रक बस ये जो है पेट्रोल से डीजल से सी_एन_जी से चलते हैं। ये जो पेट्रोल पंप हर जगह मौजूद होता है।

और काफी अच्छी तरीके से वो लगती है जैसे की किसी की शादी होती है तो शादी में कार की लगायी जाती हैं तो बहोत ही अच्छा लगता है।

वो शायद समथिंग तीस रूपये का या पचास रुपये का होता है। इसमें जो है गर्मियों में काफी लोग नहाते हैं और काफी --

जहाँ जो होते झूले होते हैं। लकड़ी होती है जो बिठा कर जो घुमाते हैं वो भी होते हैं। यहाँ जो है बड़े बूढ़े --

ये जो पहाड़ है ओ पहाड़ पे जो है ये ट्रैंनिंग की जा रही है। शायद यानी की आर्मी की या किसी भी नौकरी की ट्रैंनिंग की जा रही है।

उत्तरा प्रदेश में उत्तर प्रदेश में यू.पी में जहाँ तर पहाड़ नहीं होते है उत्तराखंड झारखण्ड --

विद्यार्थी होते हैं काफी अच्छे होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं। अच्छे होते हैं। इसमें जो होते हैं अध्यापक वो काफी अच्छे अध्यापक होते हैं। मन से --

ये जो है एक मंदिर है। श्री दुर्गा माता मंदिर जैसे क्या --

ओ दूर करने आते क्यूंकि बिजनेस जो करते हैं उनको शाम को या सुबह को ही वक्त मिलता है। यहाँ बहुत ही अच्छा महसूस --

इसके जोमेट्री बॉक्स मिल जाता है और यहाँ हमे नोटबुक भी मिल जाती है बुक भी काफी अच्छी मिलती है जैसे क्या हिंदी इंग्लिश ।

उस साइंस में जो होता है फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्टरी होती है अगर हम --

ओर ये बहोत ही अच्छा लगता है जब हम ऊपर को जाते है और नीचे को आते है काफी अच्छा मेहसूस हो --

यह एक लड़की है। ये लड़की नाइ की दुकान पर अपनी बाल कटवा रही है और ये नाइ की दुकान गांव में शहर में --

स्लो कटिंग और भी कटिंग होती है। बोहोत ही अच्छी-अच्छी कटिंग होती हैं जैसे कि हमारे बाल लम्बे हो जाते हैं तो हम नाई के दुकान पर जाते हैं और वो पूछते हैं कि कैसी कटिंग करें तो बहोत ही अ--

ये इलेक्ट्रॉनिक भी हो गयी है और डीजल से पेट्रोल से भी चलती है बहौत ही अच्छी चीज --

गन्ने की खेती गेहू की खेती और भी खेती होती है। धान की खेती होती है और जब ज्यादा टुरिस्ट यही जाता है।

बोहोत अच्छी दुकान होती है। जैसे हमारे साइडो के बाल बड़े हो जाते हैं लंबे हो जाते हैं तो हम नाई के दुकान जाते हैं तो यहाँ--

बहुत ही कम पहाड़ दिखाई दे देते है क्यों की यहाँ जो है गेहूं गन्ना धान आलू और भी --

ये जो है उत्तर प्रदेश में काफी कम पाए जाते हैं यूपी में क्यों की यूपी में जो होती है खेती होती है गेहूँ की गन्ने की काफी अच्छी खेती होती है।